बोटल तेल की बोटल आदि बहुत सारी चीजे रखी हुई है।

जहां पर कोई ड्रामा की शूटिंग भी हो सकती है जिसमें दो युवाक--

लाल कलर का है और ऊपर लाल कलर की लाइटे भी लगी हुई है।

यह तस्वीर किसी केले की ऊपरी छत की लग रही है जहां पर दो स्मारक बने हुए हैं।

पर बहुत सारी गाड़ियाँ और ट्रंक रखे हुए है साम- -

यह तस्वीर किसी ग्रोसरी के सामान ले--

सजावट काफी सुंदर किया गया है यहां पर प्राइवेट --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यह तस्वीर टाइल्स से रिलेटेड तस्वीर --

नंगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बुजुर्ग इंसान उनकी तस्वीरे ले रहा है।

मे भीम यू_पी_आई आई डी दिखाई दे रहा है। यहां पर स्कैनर लगा हुआ।

हमें खेत जोतने की कुछ मशीनें दिखाई दे रही है और कुछ धान काटने--

इस तस्वीर को देखकर ये हमें किसी ऑफिस का तस्वीर दिखाई देता है जिसका--

फिटनेस एकेडमी है जहां पर बच्चे मार्शल आर्ट --

यहां एक महिला खड़ी हो कर तस्वीर--

यह तस्वीर किसी चर्च की नजर आ--

ये जहां पर किसी कार्यक्रम का--

और यहां पर सजावट किया गया है जिसमें--

साथ में इसके ऊपर एक लकड़ी का--

बस भीं हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग--

और लॉन्ड्री बाय के_जी पर पीसेज है ड्राय क्लिनिंग है।

और एक सीमेंट का भी ब्रिज बना हुआ है और यहां पर नाव भी है।